इस तस्वीर में हमें बहुत सारी गाएं दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर हमें पाइप शॉप की नजर--

बर्थ डे पार्टी की डेकोरेशन बहुत अच्छी की गही है।

और कुछ बच्चे वो पार्क में स्लाइड लेते हुए नजर आ रहे हैं।

हमें ग्राउंड में एक लड़का खेलता हुआ नजर आ रहा है।

इन तीन बच्चो मे से दो बच्चे टेनिस खेलते हुए दिखाई दे रहें हैं।